यहा चट्टान ही चट्टानें दिखाई दे रही ही चट्टानो का बगल मे घास उग रहा है।

व्हाइट कलर गुलाबी कलर पीले कलर हरे कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। कुर्सिया रखी हुई है। पंखे लगे हुए है।

इस पिक्चर मे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रही है यहा मंदिर क्रीम कलर मे दिखाई दे रहा है आसमान एकदम ब्लू ब्लू कलर मे दिखाई दे रहा है।

यहा पानी व्हाइट और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है चट्टानोके बिच पेड़ भी पेड़ उग रहे है और यहा ब्लैक अँड व्हाइट सा दिखाई दे रहा है यहापर।